जोकि मोबाइल से फोटो खिच रहा है।

तो इस फोटो में हमें एक यूनियन बैंक का ब्रांच दिख रहा है।

और एक नीचे में बहोत बड़े बड़े डब्बे भी है।

और बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

इस फोटो में हमें एक दुकान की फोटो दिख रही है जो कि सामने में --

और पीछे में एक लड़की बैठी हुई है और आगे में एक लड़का है।

व इस फोटो में हमें एक मैरिज पैलेस दिख रहा है जोकि बहोत बड़ा सा है और उसके नीचे में--

दुकाने भी है जो की शटर लगा है और कुछ दुकानें खुली हुईं है।

और दीवाल पर पंखा भी लगा हुआ है।

इस फोटो में हमें बहुत सारे पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं।

और एक मोटरसाइकिल भी लगी हुई है।

पास में हमें एक जिम की फोटो दिख रही है।

और एक टेंपू उधर पीछे से आ रही है और रोड पर भी कुछ लोग खड़े हैं।

और बहोत सारे लाइटें भी लगी है।

और दोनों गाड़ी पर हेलमेट भी रखा है।

बहोत सी चॉकलेट्स रखी हुई है।

तो इस फोटो में हमें एक मॉल का फोटो दिख रहा है।

और उसके नीचे भी कुछ बिल्डिंगें हैं।

और इस फोटो में हमें एक दवाई का अंदर का फोटो दिख रहा है।

और बहुत सारी टंकियां भी रखी हुई हैं।

और सामने में एक सीमेंट की दुकान भी है।